ये सब हो रहा है यहाँ पर टूटा फूटा पड़ा है ये महल पुराने समय का है।

इसमें एक छोरो है जो को आपकी कटिंग कराण लाग रियो है एक आदमी बिन्की कटिंग कारन लागरियो है ऊपर पंखो लागरियो है।

दो तीन लाइटा लाग री है ऊपर दो तीन लाइटा सामे लाग री है और इन् सामे कांच है और एक बहुत बड़ा सोफा पर बैठियो है और एक सामे घडी लाग री है जैकी ईमे टाइम चाल रयो है।

इस लड़के ने जिम में जाकर अपने पैक बना रखे है और जीन्स पहन रखी है।

एक छोरो है जको दूकान में बैठयो है आपके बापके कान पे फ़ोन लगा रखियो है लाल कुर्सी पर बैठयो है लारने किताबा ही किताबा पड़ी है।